रोड के आजू बाजू में सुंदर बहोत सारा गार्डन दिखाई दे रहा है यहां से ये यहां से ये पार दिख रहा है।

यह ये गार्डन दिख रहा है यह गार्डन में बहोत सारी बिल्डिंग दिख रही है।

यह एक कपड़े की दुकान है येक ये दुकान में हर एक प्रकार के कपड़े मिलते है।